एक ग्लास की विंडो है और जिसे इसमे से मतलब आर पार भी देखा जा सकता है नीचे की तरफ एक बिजली का बोर्ड लगा हुआ है और कुछ ब्राउन कलर की चेयर्स भी रखी है।

बीच में एक रास्ता हमे नज़र आ रहा हैं जिस पे चलते हुए कुछ लोग और रेडी वाले चलते चलते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ छतरी भी पीछे देखने को मिल रही हैं और इधर की तरफ़ हम ढलान देख पा रहे हैं।

हम देख सकते है की एक रास्ता है ब्राउन कलर का पूरा आगे तक जा रहा है जोकि अ- आगे जाके घू- घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है।

देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अ कुछ एक ब्रिज जैसा नजर आ रहा है जो कि सिर्फ लोगों के चलने के लिए है ये ब्रिज और हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हैं और कुछ लोग उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं।

मैदान जैसा जहाँ पे बहुत सारे पत्थर और पेड़-पौधे वगेरा देखने को मिल रहे है और सामने वाली पर्वत भी हम देख पारे--

पहले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमे एक कमरा नज़र आ रहा है कमरे के अंदर हम देख सकते है दो कलर के पेंट किए गए हैं दो कलर से उसको डिवाइड किया गया है कलर्स को और यहाँ पे ऊपर की तरफ तो हमें क्रीम कलर नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ हम देख सकते है थोड़ा डार्क क्रीम कलर्स सा है।

देख सकते है सीमेंट के बने हुए कुछ स्ट्रकचर को जो की एक पुल को बना कर रखे हुए हैं पुल का वो बेस है सारा का सारा और हम देख सकते है यहाँ पर काफी पानी सुखा हुआ है इस--

मतलब उसमें लकड़ियों का शायद इस्तेमाल किया गया है और वहा पे फैन भी लगा हुआ है मैं और हम देख पा रहे है और रही बात ऊपर की तो छत पे हम देख पा रहे है की काफी सारी लाइटिंग लगी हुई है मैं और लाइट्स वगेरा लगी है।

देख सकते हैं कि यहाँ पर वापिस हमें एक काफी अअ बड़ा सा एक अअ सेटिंग्स अरेजमेंट के वाला हाल नज़र आ रहा है यहाँ पर काफी उसको अच्छे से सजा के रखा है कपड़ों के थ्रू और वहाँ पे बहुत सी चीजे हैं चेयर्स नज़र आ रही है टेबल नज़र आ रहा है कोई लोटा सा नज़र आ रहा है।

रास्ते में रेड कार्पेट बिछा हुआ है और बलून और लाइटिंग इफेक्ट के वजह से सारा के सारा सीन बहुत ही प्यारा लग रहा है वहा पे सीटिंग आर्जिमेंट भी किया हुआ खाने पीने के लिए।

औ और पीछे एक मकान भी बना हुआ हैं व्हाइट कलर का और उसके पीछे पूरे ऐसे खेत जैसे बने हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि पीछे एक पेड़ नज़र आ रहा हैं जो कि एक सिंगल ही अलग दिख रहा हैं बाकी सब एक साथ झुंड मे नज़र--